इस घर में मैन्यूफैक्चरिंग का काम चला हुआ है।

यह एक टेलीफोन सोफ है।

बैडमिंटन और बल्ले टंगे हुए हैं।

यह एक शॉफ का दृश्य है।

यह एक फिटनेस जिम --

सामने चार ट्रैक्टर खड़े हुए है।

एक टैक्टर का मुंह सीधा है।

एक स्कूटी भी खड़ी हुई है।

नीचे एक कंप्यूटर और सी_पी_यू रखा है।

बराबर में गणपति बप्पा की मूर्ति रखी हुई है।

मे दीवार पर एक मीटर भी लगा हुआ है।

के अगल बगल में हरी हरी घास है।

और नदी में बड़े-बड़े पत्थर भी पड़े हुए हैं।

कांच का शीशा लगा हुआ है।

बाहर एक येलो कलर का वाइपर भी रखा हुआ है।

बराबर की रैंकों में कुछ डब्बों रखे हुए हैं।

ऊपर दो पंखे लगे हुए हैं।

सामने दीवार पर बहोत सारे चिड़िया बल्ला के रैकेट्स लगे हुए हैं।

इसमें सामने एयरफोर्ड्स भी लगी हुई है।

जिसमें एक ने ब्लैक साड़ी पहनी हुई है।

यह एक स्कूल के मेस का दरश्य है।

गोल्डन कलर में तीन सौ साठ सैलून लिखा हुआ हैं।

ऊपर भी रैक में कुछ डब्बे रखे हुए हैं।

दीवार पर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

जिस पर एक पर आधार कार्ड एनरोलमेंट अपडेट सेंटर लिखा हुआ है।

पिछले वाले पर डॉक्टर अमित कुमार लिखा है।

जिसमें एक लड़का जिसने स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी--

यह एक हॉस्पिटल का रूम है।

बहुत दो डॉक्टर भी खड़े हुए हैं।

यह एक कंपनी का दृश्य है।

इस गार्डन में पेड़ भी लगे हुए है।

सामने कुछ मकान भी है।

बराबरों में रेड कलर के खंभे लगे हुए हैं।

बीच में एक डंडे के ऊपर कुछ रखा हुआ है।

दो काले रंग की बाइक भी खड़ी हुई है।

सड़क पर एक आदमी भी खड़ा हुआ है।